इसमें पेड़ के पास झोला रखा हुआ है।

टेबल के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

मूर्तियों के ऊपर मालाएं पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

महल के सामने कुर्सियां पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।